हरी मिर्च है प्याज है टमाटर है बहुत सारी सब्जियाँ है जो यहाँ पर दिख रहा है यह देखने में नजारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यह ताजी सब्जियां --

बहुत पेट्रोल पंप है। बहुत सामने-सामने लाइट लगाईं गई है।

यह एक बस स्टेण्ड है और यहां पर काफी साफ़-सफाई जगह है और यहां थोड़ा-थोड़ा कही-कही पानी का नजर भी आ रहा है और यहां एक लड़का है जो अपनी बाइक ले के कही जा रहा है और यहां बसे खड़ी है जो --

यहाँ पर एक बड़ी ही ट्रांसफार्मर लगा है जो की यह देखने में बहुत ही खूबसूरत नजारा है । यहां पर पेड़-पौधा है और यहाँ पर एक कच्ची सड़के भी है जो की दिखाई दे रही है और यह एक टावर भी है जो की बहुत ही लम्बाई है।

यह एक बहोत ही बड़ा मॉल है और यहां इस मॉल में बहोत से रंग-बिरंगे साड़ियां भी हैं बहुत अच्छी-अच्छी कुर्तियां भी टंगी हुई है जो की देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और यहां इस मूर्ति का ड्रेस भी यहां पे --

यह एक बोहोत ही बड़ा बैंक है और इस बैंक के सारे एटीएम का ऑफिस भी बनया गया हैं जो लोगो को पैसा निकालने में दिक्कत न हो। यहाँ पर बोहोत सारि बाइकें भी खड़ी हैं और एक यहाँ लोग जो अपने मोबाइल से --